जोकि हरे रंग की हाफ टीशर्ट पहने हुआ है और हाथ में घड़ी भी बांधे हुए हैं।

और काउंटर के अंदर विभिन्न प्रकार की मिठाइयां रखी हैं जो की विभिन्न रंगों से बनी हुई है।

डाक घर के सामने एक पोस्ट बॉक्स लगा हुआ है जोकि लाल रंग का है।

ऊपर पंखे लगे हुए हैं और लाइटिंग भी है।

और स्टेट बैंक के बैनर के ऊपर हमें एक एयर कंडीशनर भी दिखाई दे रहा है।

इसमें ऊपर की ओर इलेक्ट्रिकल व्हीकल नाम का बोर्ड लगा हुआ--

साइड में डेस्क पड़ी हुई है जिसमें कुर्सियां लगी हुई है।